यहां काफी आदमी लोग हैं।

यहां पे बहुत सारा दुकानें हैं।

और बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

दुकान में सामने बड़ा सा काउंटर बनाया हुआ है।

पंचायत भवन में बड़ा सा ग्रिल वाला गेट है।

ऊपर में पंचायत सचिवालय पलामू नावाडीह बोकारो लिखा हुआ है।

यह एक रोडे का दृश्य है।

यह एक रोड का दृश्य है।

ऊपर में शीशा का खिड़की लगा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर में लोहे की रेलिंग दी हुई है।

यह एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

यहां पर बहोत सारा कुर्सी भी लगाई गई है।